अ सामान रखा हुआ हैं एक के रखा हुआ हैं सामने बहुत ज्यादा --

अह साइट हैं जिसमें सब बैठ सकता है लेकिन कोई भी नहीं है बाहर में पूरा खा--

और नीचे में जो व्हाइट कलर का मशीन है जिसके पैर चक्के से लगाया हुआ है चक्का लगाया हुआ है।

एक है स्टेट बैंक का ए_टी_एम का ए_टी_एम मशीन है।

गाड़ी पे फिट हेठ है और एक गाड़ी खराब हुआ है जो क्रेन उसको खींच कर ले जा रहा है।

रस्ता के दो साइड में बहोत बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स है।

वह पेंट किया हुआ हैं उसका साइड मैं ब्लैक कलर का किया हुआ हैं।

एक पार्क है पार्क के सामने एक पेर लगाया हुआ है।

पेड़ की साइड में एक वॉल लगाया हुआ है वॉल की साइड में --

एरिया उसके साइड में खम्मा है खम्मा के ऊपर--

और दो आदमी खड़ा है पॉकेट में हाथ दे के एक आदमी आ रहा है।

जिसमें बहुत ज्यादा लोग एक साथ खड़ा हुआ है और ऊपर का साइड में--